यहां बहुत सारी बलबे भी जल रही है दीवाल में एक ऐ_सी लगाया गया है।

यहां एक बहुत बड़ा मैदान बना हुआ है।

बैठने के लिए कुछ घुमाव दार कुर्सियां भी लगी हुई है।

एक केबिन भी बना हुआ है और कांच के दरवाजे भी है।

बहुत सारी बल्बे जलती हुई प्रतीत हो रही है।

यह एक गुफा का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यह एक पेट्रोल पम्प का दृश्य दिखाई दे रहा है।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

कुछ झूले भी लगाए गए हैं पीछे कुछ मकान भी बना हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा हाल बना हुआ दिखाई दे रहा है नीचे टाइल्स लगे हुए हैं।

बोरे में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

एक महिला और पुरुष फोटो खिंचवाते हुए प्रतीत हो रहे हैं।

यहां बहुत सारे हरे हरे छोटे छोटे पौधे प्लास्टिक के खंड में रखे हुए हैं।

यहां काफी सजा हुआ है और साफ सुथरा देख रहा है।

नई नई गाड़ियां यहां रखी हुई है।

जिसमें बहुत सारे रेख बने हुए हैं उनमें भिन्न भिन्न समानें रखी गई हैं।